फूलों के गमले यहां पर रखे गए --

बहुत सारी गाड़ियों को रिपेयर किया जाता है।

यहां पर बहोत सारे बाइक्स और स्कूटी रखे गए--

यह एक बहुत बड़ा एरिया है।

यह एक बहुत बड़ा एरिया --

पौधे लगे हुए है यहा पर बहोस ही सुंदर नेचर पारक भी है।

और यहां पर बहोत सारी लाइटिंग की गई है।

यहां पर बहोत सारे कंप्यूटर रखे गए है।

बहोत से लोग यहां पर डांस --

और यहां पर बहुत ही नए-नए डिजाइन के कपड़े रखे गए।

यह एक बहुत बड़ी नदी है।

रखी गई है और यहां पर बहोत बड़ा--

यह एक बहोत बड़ा एरिया --

हैं और यहां पर बहुत सारे लोग--

हैं यहां पर बहोत सारे घर--

यहां पर सामान खरीदते हैं।

यहां एक बहुत बड़ा एरिया है।